वाला मछली बीज --

तथा यह मछलियां इकट्ठी--

मृत व्यक्ति के राह पर हार रखा हुआ--

बात करते हुए--

वे बहुत मन लगा कर पढ़ रहे--

हैं अध्यापक खड़े।

कॉलेज रोहतक जो कि वूमेन के लिए--

टी शर्ट दिखाई दे रहे हैं जो--

तस्वीर में दो लेडिस खड़ी--

एक मंदिर दिखाया--

यहां पर बहुत सारी कुर्सी वे दो--

तथा यहां पर रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

एक रेस्टोरेंट दिखाई दे रहा है।

हुआ है और बेड दिख रहा है।

बाहर दो गमले दिख रहे है।

एक व्यक्ति पौधों--